यह एक किला है इस किला में बहुत से दरवाजे और बहुत सी खिड़कियां है।

इस किले में बहुत से गेट और बहुत से खिड़किया बनी हुई है इस किले के चारो तरफ हरियाली है।

इस हॉस्पिटल में रोजाना बहोत से लोग अपने अपने इलाज के लिए आते है।

इस किले से बहुत से पहाड़ और हरे -भरे पेड़-पौधे नज़र आते है।

यहाँ पर एक दीवाल के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुछामन सिटी नागौर लिखा हुआ है।